इसमें कुछ टेबल्स नजर आ रहे हैं कुर्सियां नजर आ रही है।

जिसमें कुछ शर्टे नजर आ रहीं हैं।

साड़ी रंग बिरंगी हैं कुछ जींस भी नजर आ रही हैं और कुछ पैंटे भी नजर आ रही हैं।

रायता चटनी सलाद लिखा है और जो प्लेट के रेट लिखे हैं वो सेवंटी रूपीस लिखा है।

यहां पर एक लड़का दिख रहा है उसके पीछे एक लड़का दिख रहा है।

ओ सबको एक्सरसाइज सीख रहा है।

अ खेतों में कुछ काम चल रहा है।

एक बहोत बड़ा सा टेबल नजर आ रहा है एक चार्जर नजर आ रहा है।

जो वाइट कलर की टाइल्स पे बनी हुई है कुछ लोग नजर आ रहे है जिन्होंने व्हाइट सफेद रंग के कपड़े पहने है।

दोस्त की गाड़ियां है एक लड़का है उसने काले रंग की शर्ट पहनी है और ग्रीन पेंट पहनी है।

कुछ हरे हरे घास नजर आ रहे हैं।

इसमें कम बोर्ड नजर आ रहा है बोर्ड लाल रंग का है।

एक लड़का नजर आ रहा है जिसने जामनी कलर की शर्ट पहनी है।

कपड़े पहने हुए हैं उसके हाथ में पीले रंग का थैला है।

इसमें बहुत दुकानें हैं दुकान खुली हुई है दुकान पे लाल रंग का कुछ लिखा हुआ है।

एक लड़का दिख रहा है जिसके हाथ में कुछ पेपर है उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है और उसने भी मास्क लगाया है।

यहां पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर कुछ व्हाइट कलर के पेपर से लिख कुछ लिखा हुआ है।

इसमें कुछ गाय नजर आ रही है एक कुल्हाड़ी नजर आ रही है।

छप्पर के नीचे हरे रंग का पेंट किया हुआ है--